यहाँ पर दो इंसान जिसने बैग लगया हुआ है और सारे इंसान बिना के ही खड़े है यहाँ पे एक इंसान जिसने रेड का टी-शिर्ट पहना हुआ है।

पर बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत लोग अपने हाथों में कुछ म्यूजिक का सिस्टम ले कर उसे बजा रहे है और म्यूजिक बजा रहे है यहां पर एक बड़ा सा स्टेज टाइप का कुछ बना है।

बह यहाँ इस पत्थरो पर बैठ कर फोटो खिंचवा रही है उसने अपने सर पर एक चश्मा भी डाला हुआ है। यहाँ पर एक जेन्स --

इनमें मोटे-मोटे और तरिया र या फिर चैन लगी रहती है और उसमें कुर्सी लगा हुआ रहता है ले --

पीछे बड़े-बड़े पेड़ है जो ग्रीन कलर कि है और बड़े-बड़े बिल्डिंगस भी है बिल्डिंग के में बहुत सारी खिड़किया है। यहाँ पर बोरी भी है।